जिसके बोनट के आगे यहां पर कुछ स्क्रैच लगाए गए हैं।

और यहां बहुत सारे लोग खरीदते हुए दिख रहे।

ट्रेन की पटरी दिखाई दे रही है।

जहां बगल में भी एक काउंटर हैं।

सामने यहां मुझे एक बहुत ही अच्छा गाड़ी दिखाई दे रहा है।

और ऊपर की तरफ एक बल्ब भी दिखाई दे रहा है।